नागपुर में कृषि की कॉलेज भी है मेडिकल कॉलेज --

जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है इस तस्वीर में आपको एक पहाड़ दिख रहा है।